इस गाय के शरीर में आधा काले रंग का है और आधा जगह सफेद रंग का है।

इस गाय को एक घर के अंदर रखा गया है घर के वॉल सीमेंट से बने हुए हैं।

इस फोटो में हमें गाड़ी पार्क करने का एक जगह दिखाया गया है इस जगह पर बस एक ही गाड़ी पार्किंग पर है यह गाड़ी काले कलर का है।

इस जगह पर बाहर से काफी धूप आता हुआ भी हम देख सकते हैं।

यह फोटो किसी गोडाउन का लग रहा यहां पर काफी सारे लोग कुछ बोरे लेकर एक ट्रक पे लोड कर रहे हैं।

इस फोटो में हमें बहुत सारे हरे मिर्च दिखाए गए है।

यह सारे मिर्च नीचे खाली फ्लोर पर रखे हुए हैं।

इन मिर्च में कुछ मिर्च सड़े हुए है तो कुछ मिर्च अच्छे हैं।

इस फोटो मे हमे काफी रंग बिरंगे फूल दिखाए गये है।

इन फूलों का उपयोग करके फूलों के माले भी बने हुए हैं।

इन फूलों के माले को यहां पर टंगा कर रखा गया है।

ये फोटो किसी जिम का है यहां पर जिम करने के लिए काफी सारे मशीन्स भी लगे हुए हैं।

इस फोटो में हम एक इंसान को भी देख सकते है ये इंसान शॉर्ट्स और टी शर्ट पहने हुए है।

यह प्लेट सफेद कलर का है जिस पर लाल कलर के लाइंस बने हुए है।

इस फोटो में हमें एक मंदिर दिखाया गया है यह मंदिर देखने में काफी बड़ा लग रहा है।

इस सीढ़ी पर हम दो लड़कों को जाता हुआ देख सकते हैं।

स्टेज पर चढ़ने के लिए एक सीढी भी बना हुआ है।

स्टेज के साइड पर हम काफी सारे फूल भी देख सकते हैं।

इस फोटो में हमें एक इंसान दिखाया गया है ये इंसान अपने साथ एक छोटे से बच्चे को लेकर खड़ा है।

इस फोटो में हमें एक बुक स्टोर दिखाया गया है इस दुकान पर काफी सारी किताबें रखें हुए हैं।

सामने वाला इंसान चेक शर्ट पहना हुआ है।

इस फोटो में हम एक बिल्डिंग देख सकते हैं यह बिल्डिंग पीले कलर का है।

इस बिल्डिंग के नीचे काफी सारे बाइक और स्कूटी पार्किंग रखे हुए है।

इस फोटो में हमें एक रास्ता दिखाया गया है इस रास्ते पर काफी सारी गाड़ियां भी जा रही हैं।

रास्ते के बायने ओर हम एक इंसान को जाते हुए देख सकते हैं।

रास्ते के दाईंने ओर हम कुछ पेड़ पौधे भी देख सकते हैं।

इस फोटो में हमें एक बिल्डिंग दिखाया गया है यह बिल्डिंग दो मंजिलों का है।

बिल्डिंग के ऊपर एक नीले कलर का बोर्ड लगा हुआ है।

बिल्डिंग के नीचे काफी सारी गाड़ियां देख सकते हैं।

इस फोटो में हमें बहोत बड़े से तालाब को दिखाया गया है इस तालाब के ऊपर काफी सारे पत्ते दिखाई दे रहे हैं।

ये पत्ते देखने में लोटस फ्लावर के पत्ते दिख रहे हैं।

ये सारे पत्ते पानी मे तैर रहे है।

इस फोटो में हमें एक बहोत बड़ा पार्क दिखाया गया है।

इस फोटो में हमें एक कंस्ट्रक्शन साइट दिखाया गया है यहां पर एक बड़ा सा बिल्डिंग बन रहा है।

यहां पर कुछ लोग भी है जो काम कर रहे हैं।

इस फोटो में हमें एक बैंक दिखाया गया है साइड पर हम देख सकते हैं कि ये यूनियन बैंक है।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

यह फोटो किसी के बड्डे सेलिब्रेशन का है यहां पर इस जगह को काफी सुंदर तरीके से सजाया गया हैं।

इस फोटो के बीच में एक सुंदर सा केक भी रखा हुआ है।

इस फोटो मे नीचे का फ्लोर कांक्रीट एवम ईंटों से बना हुआ है।

इस जगह के चारों तरफ काफी सुंदर पंडाल से सजाया गया है।

दुर्गा मां को सफेद और लाल कलर की साड़ी पहनाई गई है।

यह फोटो किसी ऊचे जगह से लिया गया है।

इस बिल्डिंग का रंग सफेद रंग का है।

इस मैदान के साइड पर हम काफी सारे बाइक्स पार्किंग पर देख सकते हैं।

इस फोटो में हमें एक दुकान दिखाया गया है इस दुकान पर काफी सारे पुस्तकें रखे हुए है।

यहां पर कुछ लोग भी आए हुए हैं।

दुकान के अंदर हम दो फैन भी देख सकते है।

इस नदी पर काफी बड़े बड़े पहाड़ भी हैं।

इस फोटो में हम काफी सारे लोगों को देख सकते हैं यहां पर महिलाएं ज्यादा है।

यह छठ पूजा के समय को दिखा रहा है।

एक इंसान और एक महिला इस ऑटो को खरीद रहे है।

इस ऑटो के पीछे हम एक बड़ासा गेट भी देख सकते हैं।

सभी लोगों के बीच दो छोटी बच्ची भी है ये दो बच्ची हाथ में कैंडल लिए हुए हैं।

इस रूम का वॉल हरे कलर का है।

पीछे के वॉल्स मे छोटे छोटे गोल गोल छेद बने हुए है।

इस फोटो में हमें एक खुला मैदान दिखाया गया है इस खुले मैदान पे लोग क्रिकेट खेल रहें है।

मैदान के दूसरे तरफ हम काफी बड़े बड़े पेड़ भी देख सकते हैं।

इन सारे पेड़ो के बीच एक बड़ा सा टॉवर भी है।

इस फोटो में हम एक इंसान को देख सकते हैं जो की टोपी पहना हुआ है।

इस फोटो में हम काफी सारे लोगों को नाचते हुए देख सकते हैं।

इस फोटो मे लड़कियां सारी पहनी हुई है।

इस फोटो में हमे रात का समय दिखाया गया है।

इस जगह को काफी सुंदर से सजाया गया है चारों तरफ का पिलर्स नीले रंग का है।

इस फोटो में हमें काफी डब्बे भी दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में हमें तीन सोने की मूर्ति को दिखाया गया है ये तीनों मूर्ति किसी भगवान का लग रहा है।

इन तीनों मूर्ति को एक इंसान पूजा कर रहा है।

यह इंसान चेक शर्ट पहना हुआ है यह इंसान एक लड़का है।

इस फोटो में किसी चीज़ का पूजा हो रहा है यहां पर काफी सारे औरतें खड़ी हैं।

यह सारे औरतें सफेद कलर की साड़ी पहनी हुई है।

सारे औरतों ने सफेद कलर के माक्स भी पहन रखे हैं।

इस फोटो मे हमे एक ब्रिज दिखाया गया है इस ब्रिज के नीचे काफी बड़ा सा नदी भी है।

नदी के दूसरे तरफ हम काफी सारे पेड़ पौधे भी देख सकते है।

इस ब्रिज का कलर लाल रंग का है।

इस फोटो में हमें एक मंदिर दिखाया गया है।

इस मन्दिर का कलर पूरा सोने जैसा है।

मंदिर के गेट के बाहर गेट नंबर फोर लिखा है।

ये तालाब काफ़ी गहरा लग रहा है।

इस तालाब के चारों तरफ पत्थर है।

यह पत्थर बहोत बड़े बड़े है।

इस फोटो में हमें एक स्टेज दिखाया गया है।

यह स्टेज एक रूम के अंदर बना हुआ है।

इस रूम के अंदर बहुत सारे लोग भी है।

स्टेज के ऊपर भी काफी सारे लोग खड़े है।

और इस स्टेज पर काफी लाईटिंगस भी लगे हुए हैं।

इस फोटो में हम काफी सारी लड़कियों को देख सकते है ये सारी लड़कियां स्कूल के ड्रेस पहने हुए हैं।

कुछ लोग नीले रंग के ड्रेस पेहने हुए है।

इस फोटो में हमें एक ब्रिज दिखाया गया है ये ब्रिज एक नदी के ऊपर बना है।

आसमान काफी बादलों से भरा हुआ है।

इस फोटो में हम बहोत बड़े गौतम बुद्ध के एक मूर्ति को देख सकते हैं यह मूर्ति सोने के कलर का है।

यहां पर एक इंसान भी अपना फोटो खींच रहा है यह इंसान सफेद कलर का शर्ट पहना हुआ है।

इस बिल्डिंग के नीचे काफी सारे लोग भी है।

इस फोटो में हमे एक बहोत सुंदर सा सीनरी दिखाया गया है।

यहां पर हम एक बड़े से पहाड़ को भी देख सकते हैं।

नीचे जमीन पर हम थोड़ी पानी भी देख सकते है।

इन बैट्स के नीचे हमें सीजन बॉल भी दिखाया गया है।

ये बिल्डिंग ईटों से बना हुआ है।

इस बिल्डिंग का गेट नीले कलर का है।

बिल्डिंग के सामने दो लोग बैठे हुए हैं।